बहुत सारे आदमी भी हैं।

जाली भी है और ये पार्क है।

इसमें बहुत सारा पत्थर है।

इस फोटो में जिम दिख रहा है।

एक ट्रेन आ रहा है एक ट्रेन खड़ा है।

उस वो वाइट रंग का--

उसके बगल में एक शीशा का पूरा खड़ा है।

टेबल के ऊपर एक बोतल रखा हुआ है बहोत सारे चेयर भी हैं।

दो लेडिस बैठे भी हैं और बहुत सारे चेयर भी हैं।

बगल में शिशा है बहोत और परदे लगे हुए हैं।

नदी में से पानी गिर रहा है।

फोटो मे एक पुतला है और इस पुतले को कपड़ा पहनाया हुआ है।

दो आदमी सेल्फी ले रहे हैं।

इस फोटो में बहुत सारे कॉपी और किताब दिख रहे हैं।

यह बहुत सारे लड़के और लड़कियां मार्शल आर्ट्स फिटनेस कर रहे हैं।

इस फोटो में एक रैक है।

इसमें बहुत सारे कबड़ में दवाई रखे हुए है।

बगल में दो कुर्सी रखे हुए हैं।

इस फोटो में एक स्कूल दिख रहा है।

बहोत सारे लड़कियां भी हैं।

इस फोटो में एक डैम दिख रहा है।

उसके अगल बगल में बहुत सारे झाड़ झाड़ियां हैं।

बहुत सारे सामान हैं और नीचे में एक चेयर है।